और कुछ लड़के दौड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बोहोत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे दो आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और उसके आगे एक ट्रक दिखाई दे रहा है।